आगे के जीपे के थोड़ी बगल में स्टील का बर्तन रखा है जिसके ऊपर चॉकलेट रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक किला दिखाई दिया जा रहा है या किला बहोत पुराना है यह किला थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है इस--

थोड़ी आगे हरी हरी घास से किला बहुत ऊपर की तरफ दिखाई दिया जा--

इसके अंदर दो आदमी खड़े हुए एक आदमी सोने की चीजें दिखा रहा है दूसरा आदमी खरीदने के लिए है।

इसके और किनारे किनारे ब्राउन्ड्री घेरी गई लोहे की लकड़ी की तरह। लाइटें लगी हुई हैं।

यह किसी बिल्डिंग के अंदर का शी है।

ये सामने की तरफ घर जैसा बना है जिसके नीचे नीचे खुदाई करने वाली सामान जैसे जे_सी_बी वगैरा रखी--

पिलर मेहरून और क्रीम कलर का है ऊपर सफेद कलर का है लाइटिंग बहुत सारी है।

बहुत सारे ऑटो बाहर खड़े हुए ऑटो के बगल में बहुत तीन चार लोग कुर्सी लगाकर बैठे हैं।